वृक्ष के उस पार बहोत सारे पेड़ दिखाई दे रहे है और वृक्ष के आस पास लोग खड़े हुए है वो भी दिखाई दे रहे है।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

एक स्टोर दिखाई दे रहा है जिसके अंदर सभी चीज पड़ी हुई है जैसे किंडर जॉय नमक सर्फ एक्सेल --

एक मालगाड़ी का डिब्बा हु पड़ा हुआ है।

और कच्ची ये सड़क है उस और पहाड़ के पीछे टावर भी लगा हुआ है।

के अंदर बहोत सारे छोटे बड़े फूल पौधे उगार ये हुए हैं।

टेबल बन रखे हुए हैं उसके ऊपर ग्लास और सब दिखाई दे रहा है और बहोत सारे लोग भी बैठे हुए हैं अलग अलग खटिये में।

एक दीवाल दिख रही है जिसपे केंद्रीय विध्यालय लिखा हुआ है और कुछ लड़किया है।

और रेलवे स्टेशन भी है ये और उसके पीछे का जो ग्राउंड है उसमें बहोत सारे छोटे बड़े पौधे लगे हुए--

कोई सड़क के ऊपर इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप का लोगो दिखाई दे रहा है उसके आगे कुछ लोग भी खड़े हुए--

एक साइकल के स्टोर का शॉप दिख रहा है उसके अंदर कुछ लोग साइकल पे बैठे हुए भी दिख रहे कुछ फोटोस --

और उसके अंदर प्रोग्राम चालू है। बहुत सारे लोग आते जाते भी दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग बैठे हुए--